यह एक पॉड है। यहाँ पर पॉड पर बैठ कर के सेल्फी ले सकते हैं और गांव के भी लोग आते है पॉड पे बैठते हैं। धुप ले सकते हैं लेट सकते हैं।

यह फूल बाजार है। यहाँ से जयमाला भी और माला भी जब मर जाते ही तब यहाँ से फूल ले जाते हैं फेकने के लिए और माला भी ले जाते हैं जैसे की लड़की की शादी हो --

और बी कुछ कार्यक्रम होते हैं जोकि छोटे-मोटे बो बी कर सकते हैं और तौर पर तो सारे काम कर सक --